यहाँ पर इंडिगो की फ्लाइट है और ये अपना फोटो खिंचवा रहा है।

और पीछे एक लेडिज खड़ी हुई है <coughs> जिसके हाथ में बच्चा है और ब्लैक कलर का परस ली हुई है।

ब्लैक अंगूर ग हरा अंगूर और अनार है संतरा है सेब है।

ये पहाड़ देखने में बहुत ही अच्छे और गहरे कलर हरे कलर के जंगल घने जंगल दिख रहे हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे है।